परपांग लाइट लगा हुआ है और कांच लगा हुआ है और पीला कलर गार्ड बहुत अच्छा दिखाई--

इधर-उधर तार फार दिखाई दे रहा तीन मनुष्य दिखाई दे रहा है लग रहा है कोई इनके सेवक किसी से बात क्र रहे है अच्छा दिख रहा है।

ऐसा लग रहा है कि यह क्रिसमस दिन का सजावट है यह क्रूस बना हुआ है बाइक खड़ा हुआ हैं।

यहाँ कोई मेला दिखाई दे रहा है इसमें एक चकरी मेला दिखाई दे रहा है उसमें आप बैठे है एक महिला खड़ी हैं।

उपरिया और पेड़ -पौधा दिखाई दे रहा है हरा- हरा और इधर मेन रस्ता में हैं।

एक दुकान खना है बस्तर डेयरी फार्म इहां किराना दुकान उगाने इहा किराना समान मिलता है एक सीढ़ी लगा हुआ है लोहा का मनुष्य आदमी खड़ा है और एक लेडिस खड़ी हैं।

पुरुष महिला खड़े हुए हैं ले कर और बिल्डिंग बना हुआ है बिल्डिंग मे महिला बच्चे लोग देख रहे है उपर से।